देख सा देख सकते है कुछ केबिन्स बने हुए हैं पर पर्सन के लिए और जिसमें चेयर्स लगी हुई है और टेबल है।

इस पिक्चर में हम एक स्टोर को देख पा रहे है और जो की काफी प्यारा लग रहा है उसमें गिलास के कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर रखे हुए कुछ होंगे प्रोडक्ट दिख रहे हैं।

--और शर्ट पहना हुआ एक वो देख रहा है एक बस की तरफ और बस ऑरेंज वाइट कलर की और लोकल बस लग रही है क्यों की उसमे जो विंडो है वो विंडो में लोहे के रोड जो है वह बहार की तरफ निकल रहे है और शीशे चढ़े हुए है गाड़ी में।

देख सकते है एक लड़की को जो की अ- डांस फॉर्म करते हुए परफॉर्म कर रहि है खुद को और उसने दोनों हाथ अपने हवा में लटका रखे है और कुछ--

एक तरफ और साड़ी पहनी हुई नजर आ रही है दूसरी तरफ भी हमें कुछ आदमी नजर आ रहे है और बीच-बीच में कुछ लेडिस बैठी हुई है और दोनों तरफ गेट है गेट सारे के सारे खुले हुए है।

बस का जो कलर है वो पिंक और येलो की है दूसरी वाली बस पूरी अ अलग अजीब से ग्रीन कलर की है ऊपर की तरफ हमें खुला आसमान नजर आ रहा है और बसों की दोनों की विंडो नजर आ रही है।